और एक डंडा दिख रहा है और यहाँ एक तस्वीर भी दिख रही है और आसमान भी यहाँ पर दिख रहा है और नीचे पत्थर --

एक स्टेडियम का फोटो है। जिधर बहोत सारे लोग दिख रहे हैं। छोटी-छोटी घास दिख रही है। कुछ मिट्टी पड़ी हुई है और स्टेडियम का कलर येलो है और यहाँ पर आसमान दिख रहा है। खंभा दिख रहा है एक और यहाँ पे --